ये एक जंगल का वैली का चित्र है और ऊपर पहाड़ पर से पानी गिर रही है।

मे खोली लगाए गए है और यहा पर बहुत सारे आदमीन खड़े दिखाई दे रहे है।

बहुत सारे गिलास रखे हुए हैं ऊपर से तार खींचे गए हैं पंखा भी लगाए गए हैं।

ये दुकानों का चित्र है जो कि यहां पे बहुत सारे दुकान है दुकान के ठीक ऊपर एक झंडा लगाया गया है।

और ये दुकानें छत वाले हैं और इसके सामने करकट लगाए गए हैं।

ये कहीं बड़ा सा डैम का चित्र है जो कि देखने में काफी सुंदर दिख रही है यहां पे दो आदमी भी खड़े हैं।

था अगल बगल में पेड़ भी लगाए गए हैं जो कि पूरा हरा दिख रहा है पानी का बहाव बहुत तेज है।

यहां पे पूजा हो रही है जो कि यहां पे बहुत सारे आदमी बैठे हुए हैं एक तरफ जेंट्स बैठे हुए हैं एक तरफ लेडीज बैठे हुए हैं।

ये एक जिम का पोस्ट है सामने दो आदमी खड़े हैं बगल में बोतल रखी हुई है।

सामने एक घर दिखाई दे रही है घर में एक शटर लगा है शटर अभी बंद है।

फैक्ट्री से धुआं निकल रही है।

सामने दो घर दिखाई दे रहे हैं जोकि सीड सेंटर है ऊपर बोर्ड में भी लिखा है गणेश सीड सेंटर ।

यहां पे दो मोटर लगाए गए हैं और यहां पे पाईप भी बिछाए गए हैं।

बगल में दो बड़ा सा सोलर भी है।

यहां पे एक बाल्टी भी रखा गया है एक लोहा का बक्सा भी रखा गया है एक कुर्सी भी रखा गया है।

बगल में बहुत सारे कुर्सियां रखे गए हैं तथा यहां पे पंखे लटकाए गए हैं और भी यहां पे बोर्ड लगाए गए हैं।

दो खिड़कियां है एक खिड़की नीचे है एक खिड़की ऊपरे है।

इसके पीछे बहुत सारे परदे लगे हैं।

छोटे छोटे रूम बनाए गए हैं बहुत सारे।

और इसके बगल मे एक बड़ा-सा घर दिखाई दे रहा है। जो की पलस्तर हुआ है।

बच्चों का ड्रेस का कलर है नीला और नीचे भी भी ब्लू कलर का पैंट पहने हुए हैं।

इ रूम का अंदर का चित्र है जहां पे एक गोदरेज रखा गया है।

बाहर में भी दो तीन बाइक लगे हुए हैं।

यहां पे एक बाइक वाला आदमी भी जा रहा है।